मॉल का पेंट व्हाईट कलर से किया हुआ हैं।

जो कि ऐ कपड़े खरीद रहे है।

यह एक कपड़े का दुकान है।

दोकान भी है जहां की बहुत सारे सामान बिक रहे हैं।

आर्टून में भी बहुत सारे सामान है।

यह एक खेलने का फील्ड है।

सभी बच्चे खड़े हैं।

यह एक दुकान है।

हां इसका फर्श भी वाइट कलर का है।

यहां बहुत सारे कपड़े हैं।

इस मोल का नाम शीतल मिनी मोल है।

यहां का मेन गेट शीशा का है।

टेबल का कलर थोड़ा एल्लो में है।

एक अंदर है और तीन बाहर है।

बैंक के बाहर तीन लाइट्स लगी हुई है ऊपर में।

नो स्मोकिंग का पोस्टर भी लगा हुआ है।

मोमबत्ती को दिए में जलाया गया है।

एक केला का पत्ता दोनों साइड में लगा हुआ है।

यह एक दुकान है।

घोड़े में बैठी हैं हाथ में तलवार लिए--

मैन मेन गेट में लिखा हुआ है देव मेनसन ।

में एक साइकिल भी खड़ा है।

यहां बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

पीछे में बहुत सारे मोमबत्ती और दिए जले हुए हैं।

स्कूल के सामने एक खंभा है।

स्कूल का मेन गेट का रंग रेड है उसमें भी नाम लिखा हुआ है स्कूल का --